पेड़ के पीछे पानी टंकी है पानी टंकी पानी रखा हुआ है | लाइन बहुत ही साफ सुथार जगह है ।

स्कूल के ऊपर एक पेड़ का टहनी लदा लामा हुआ है ।

है बड़े से पुरानी बिल्डिंग है

पेड़ मे छोटी छोटी उगा हुआ है |